यहां पे एक महाविद्यालय है यहां पे एक।

और ये गुलाब के फूल के ऊपर हल्की हल्की--

पानी भी डाली गई है जिससे पानी के बुंदे नजर आ--

यहां पे एक नदी भी बहती हुई नजर आ रही है।

और सामने की तरफ बहुत सारा पेड़ पौधा--

और हां पूरा खेत वगैर भी दिख रहा है पेड़ भी दिख रहा है।

यहां पर दो पिलर खड़ा है यहां पे होटल भी है होटल का नाम है होटल किसन।

और बिल्डिंग जो है पिंक कलर का लग रहा है।

और भी इत्यादि कलरों का है यहां पे और कुछ बॉक्स देखे जा सकते हैं बॉक्स --

ये किसी ऑफिस या पार्लर का तस्वीर है।

सारे बच्चे हाथ नीचे करके खड़े हैं तो कोई गाना गा रहे हैं प्रेयर से संबंधित--

साइड में कोई मैजिशियन जो है गाना बजा रहा हैं।

यह एक रेड कलर का मकान है यहां का एक मोटरसाइकिल खड़ी है यहां का--

ये बोरा कलर पीले कलर का बोरा भी दिखाई दे रहा है।

जहां पे ऊपर चारों तरफ कर्कट लगा हुआ हैं सामने छोटा सा--

एम_जे कंप्यूटर इंटर पोस्टर दिखाई दे रहा--

बहोत अच्छा लग रहा है। एक आदमी दुकान के बाहर खड़ा है।